यहां पर दो ब्लैक बोट और व्हाइट बोर्ड भी है।

और यहाँ बहोत सारी बेंचेस भी हैं।

किसी ने यहां की फोटो खींची है।

यह क्रिस्टल ऑटो क्लास की दुकान का है।

यह एक हाईवे का प्रतीत हो रहा हैं।

किसी ने यहां फोटो खींचा हैं।

यहां एक फोटो है यह फोटो बहुत सुंदर लग रहा है।

यह एक फोटो है यह फोटो बहुत सुंदर है।

यह लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी का है।

किसी नें यहां फोटो खींचा है।

किसी ने यहां पर फोटो खिंचा है।

किसी ने यहां का फोटो खींचा है।

यह फोटो बहुत सुंदर लग रहा है।

यह कैमरे की दुकान का है।

यहां पर बहुत सारे लोग नहीं हैं।

जिसमें एक लड़का और एक लड़की फोटो खिंचवा रहे हैं।

इन दोनों का फोटो दिखाया नहीं गया है।

इस स्केलेटन को पलंग पे लेटाया है।